यह एक क्लास रूम है जिसमें लड़िकयाँ कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रही हैं।

यह एक शॉप दिखाई दे रही है यह क्लोथिंग शॉप है शॉप के अंदर कपड़े जमे हुए दिखाई दे रहे है एक बच्चे की डमी दिखाई दे रही है।

बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहें हैं और एक बडा चेयर दिखाई दे रही है शटर दिखाई दे रही है।